और श्रध्हालू यहाँ देखने दिखरहें है मंदिर में काफी ज्यादा सफाई है और आसपास दुखाने दिखाई दे रही है बिलडिंग दिखाई दे रही है।

ये भगवान पार्शवनाथ का मंदिर है। इसमें कई महिलायें पूजा करती हुए नजर आ रही हैं और दीपक इनके सामने जल रहा है इनके सर पे शेष नाग की छाया दिखाई दे रही है भगवान पार्शवनाथ के।

और एक मोटर बाइक पे एक लड़का बैठा हुआ दिखाय दे रहा है का नाम इस कॉलेज का नाम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बदायूं हैं।

एक इ-रिक्शा स्कूटी शॉप नजर आ रही है और इसमें मथुरिया इ-रिक्शा रेड कलर के रिक्शा पे --

ये बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है। मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है। सड़क पर विहकल चलती हुई नजर आ रहे हैं। पेड़ के नीचे ये दुकान दिखाई दे रही है।